इस चित्र में एक बस्त्र डेरी फार्म दिखाया गया है जिसके बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं।

वह लड़कियां लड़के सब आदमी खड़े हैं एक स्टेयर्स खड़े है।

बहोत सुंदर दुर्गा माता का म मंदिर का स्टेज बनाया गया है।

बहोत ही सुन महाराज पूजा कर रहे है पब्लिक है स्टेज बहोत सुंदर है।

गार्डन की एंट्रेंस दिख रही है जो ग्रीनरी साइड में ग्रीनरी ग्रीनरी है अंदर थोड़ी बहोत कुछ झूले हैं काला पेड़--

व कब का वो जो वॉल पर डिजाइन कब की है जिसके ऊपर अंगूर और पत्ते हैं।